ये आदमी यहाँ तरह-तरह के योग कर रहे हैं।

इस घर में कई तरह-तरह का फूल --

इस फैक्ट्री मे बहुत सारे बड़े-बड़े मशीन और बड़े-बड़े --

लोहे का प्रयोग किया गया है ।

और कई कलर - कलर के लाइट लगाया गया है।

यह दूल्हा गाड़ी है इस गाड़ी को बड़े ही --